और एक स्पीकर भी दिख रही है जिसका ऊपर येलो कलर की बलूंस है।

तीमेंट बैग भी दिख रही है।

घर के पीछे दछ्छी भी दिख रही है।

यहां में मुझे जहसी दिख रही है।

और एक स्टेज भी दिख रही है।

और दो खिड़की भी दिख रही है।

बाहर में मुझे गच्ची भी दिख रही है।

और बहोत सारे सामान रखे हुए हैं।

मुझे यहां सा सात औरत दिख रही है और वो लोग योगा करते हुए --

इस फोटो में मुझे एक स्कूटी एक बाइक और एक साइकिल दिख रही है।

के आगे में बहुत सारा पेन डाल के रखा है और तीन बैग लट लटका के रखा है।

ऊपर एक स्ट्रीट लाइट भी दिख रही है।

दीवाल भी मुझे दिख रही है।

पिंक ब्लू और व्हाइट के वॉल दिख रही हैं।

पीछे में बहुत सारा बिल्डिंग्स भी दिख रही है।

पीछे साइड में बहोत सारे कपड़ा झाप के रखा है जो कि प्लास्टिक अंदर है।

का पीछे एक आदमी है और उसका पीछे में एक दुकान है जो जहां में जे_पी मैकेनिकल वर्कशॉप लिखा है।

ऑरेंज पर्दा और पर्पल पर्दा भी दिख रही है।

बुक स्टोर में बहुत सारा बुक दिख रही है।

ऊपर में दो लाइट लगाया हुआ है।

एक इंसान दिख रहा है।

पीछे तरफ पहाड़ भी दिख रही है।

कपट पे उसमें एक ताला भी दिख रही है।

एक छोटा सा बेड भी दिख रही है।

ग्रीन व्हाइट रेड कलर के बैलुंस दिख रही है।

और दो आदमी है एक जो चल रहा है और एक जो दुकान के अंदर बैठ के रखा है।

घर के पीछे बहोत सारा गच्ची भी दिख रही है।